लिबर ऑफिस राइटर में डॉक्युमेन्ट्स को प्रिंट तथा देखने के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित सीखेंगे
डॉक्युमेन्ट्स को देखना
डॉक्युमेन्ट्स को प्रिंट करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNUलिनक्स का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334
अतः लिबर ऑफिस राइटर में विविध व्यू ऑप्शन के बारे में सीख कर अपने ट्यूटोरियल की शुरूआत करते हैं
यहाँ राइटर में मूलतः दो व्यापक उपयोगित व्यू ऑप्शन्स हैं
यह हैं प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट
प्रिंट लेआउट ऑप्शन डॉक्युमेंट प्रिंट होने पर कैसे नज़र आएगा यह प्रदर्शित करेगा
वेब लेआउट ऑप्शन डॉक्युमेंट वेब ब्राउज़र में कैसे नज़र आएगा यह प्रदर्शित करेगा
यह उपयोगी है जब आपको एचटीएमएल डॉक्युमेन्ट्स बनाने होते हैं तथा डॉक्युमेंट को एडिट करते वक्त फुल स्क्रीन मोड में उसे देखने के लिए
प्रिंट लेआउट ऑप्शन के लिए व्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रिंट लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें
वेब लेआउट ऑप्शन के लिए मेन्यूबार में व्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर वेब लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें
इन ऑप्शंस के अलावा आप डॉक्युमेंट को फूल स्क्रीन मोड में भी देख सकते हैं
मेन्यूबार में व्यू ऑप्शन क्लिक करें और फिर फुल स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करें
डोक्युमेन्ट्स को एडिट करने तथा प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए फुल स्क्रीन मोड उपयोगी है
फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें
हम देखते हैं कि डॉक्युमेंट फुल स्क्रीन मोड से बाहर आया है
अब व्यू मेन्यू में प्रिंट लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करें
आगे बढ़ने से पहले अपने डॉक्युमेंट में एक पेज जोड़ते हैं
क्लिक करें इंसर्ट जीटीजीटी मैनुअल ब्रेक और पेज ब्रेक ऑप्शन चुने
फिर ओक पर क्लिक करें
इसके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
ज़ूम एक अन्य ऑप्शन है डॉक्युमेंट को देखने के लिए
मेन्यूबार में Viewऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ज़ूम पर क्लिक करें
ज़ूम तथा व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई पड़ता है
इन पर हेडिंग है ज़ूम फैक्टरेंड व्यू लेआउट ज़ूम फैक्टर वर्तमान डॉक्युमेंट और उसी प्रकार के सभी डॉक्युमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए जूम फैक्टर सेट करता है जिन्हें आप उसके बाद खोलते हो
इसमें कई उपयोगी ऑप्शंस हैं जिनकी चर्चा एक एक करके करेंगे
Optimalऑप्शन पर क्लिक करके आपको डॉक्युमेंट का अधिक अनुकूल दृश्य मिलता है
फिट विड्थ एंड हाइट व्यू डॉक्युमेंट को पेज की संपूर्ण लम्बाई और चौड़ाई में सर्वत्र फिट करता है
इस प्रकार यह एक समय में एक पृष्ठ प्रदर्शित करता है
यह डॉक्युमेंट के विभिन्न पेजों को देखने और एडिट करने के लिए अधिक सरल बनाता है
अगला ऑप्शन है फिट टो विड्थ
यह पेज को इसकी चौड़ाई से फिट करता है
100 व्यू पेज को अपने वास्तविक साइज़ में प्रदर्शित करेगा
आगे हमारे पास वेरिएबल नामक अधिक महत्वपूर्ण व्यूइंग ऑप्शन है
वेरिएबल फील्ड में आप जूम फैक्टर एंटर कर सकते हैं जिसमें आप डॉक्युमेंट प्रदर्शित करना चाहते हैं
उदाहरणस्वरूप हम वेरिएबल फील्ड में 75 वेल्यू एंटर करते हैं और फिर ओक बटन पर क्लिक करते हैं
वैसे ही डॉक्युमेंट्स को एडिट और देखने के लिए आप अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार जूम फैक्टर को बदल सकते हैं
डायलॉग बॉक्स में अन्य फीचर व्यू लेआउट है
व्यू लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट डॉक्युमेंट्स के लिए है
इसका उपयोग डॉक्युमेंट में विभिन्न व्यू लेआउट सेटिंग के प्रभाव को देखने के लिए जूम फैक्टर को कम करने के लिए किया जाता है
इसमें क्रमानुसार एक के नीचे एक और आस पास में पेज प्रदर्शित करने के लिए ऑटोमेटिक और सिंगल पेज जैसे आप्शन्स हैं
उदाहरणस्वरूप यदि हम ज़ूम फैक्टर के अंदर फिट विड्थ एंड हाइट ऑप्शन चुनते हैं तो फिर व्यू लेआउट ऑप्शन के अंदर सिंगल पेज ऑप्शन पर क्लिक करें और आखिर में ओक बटन पर क्लिक करें हम देखेंगे कि पेजेस एक नीचे एक प्रदर्शित होते हैं
अब Automaticऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि पेजेस आस पास प्रदर्शित होते हैं
राइटर स्टेटस बार पर तीन कन्ट्रोल्स भी अपने डॉक्युमेंट के व्यू लेआउट और जूम को बदलने की अनुमति देते हैं
व्यू लेआउट आइकन बाएँ से दाएँ निम्नलिखित हैं सिंगल कॉलम मोड आस पास पेजेस के साथ व्यू मोड और एक खुली किताब के रूप में दो पेजेस के साथ बुक मोड
हम पेज में जूम करने के लिए जूम स्लाइडर को राइट में या अधिक पेजेस दिखाने के लिए लेफ्ट में भी ड्रैग कर सकते हैं
लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंटिंग के बारे में सीखने से पहलेचलिए पेज प्रीव्यू के बारे में कुछ सीखते हैं
फाइल पर क्लिक करें और पेज प्रीव्यू को प्वॉइंट करें
पेज प्रीव्यू बार दिखता है जब आप पेज प्रिव्यू मोड में वर्तमान डॉक्युमेंट देखते हैं
यह मूलतः दिखाता है कि आपका डॉक्युमेंट कैसा दिखेगा जब यह प्रिंट होता है
आप अपनी resumeओडीटी फाइल का प्रिव्यू देख सकते हैं
यहाँ प्रिव्यू पेज के टूल बार में विविध कन्ट्रोल ऑप्शन्स हैं
यहाँ ज़ूम इन ज़ूम आउट नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज और प्रिंट के लिए ऑप्शन्स हैं
लिबर ऑफिस राइटर के साथ ही साथ पेज प्रिव्यू में डॉक्युमेंट कैसे देखें यह सीखने के बाद अब हम लिबर ऑफिस राइटर में प्रिंटर के कार्यों के बारे में सीखेंगे
साधारण शब्दों में प्रिंटरडॉक्युमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोगित एक आउटपुट डिवाइस है
अब हम देखेंगे कि प्रिंट के विविध ऑप्शन्स तक कैसे पहुँचें
टूल्स पर क्लिक करें फिर आप्शंस पर क्लिक करें
लिब्रियोफिस राइटर के बगल में ऐरो पर क्लिक करें और आखिर में प्रिंट पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स दिखता है जो आपको फॉर्म चुनने के लिए ऑप्शन्स देता है
अतः डिफॉल्ट सेटिंग रखें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
अब पूरे डॉक्युमेंट को सीधे प्रिंट करने के लिए टूलबार में प्रिंट फाइल डायरेक्टली आइकन पर क्लिक करें
इसे क्विक प्रिंटिग कहते हैं
आप डिफॉल्ट सेटिंग्स बदलकर और प्रिंट ऑप्शन तक पहुँच कर किसी डॉक्युमेंट को प्रिंट करने पर अधिक नियत्रंण कर सकते हैं
मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर Printपर क्लिक करें
स्क्रीन पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
यहाँ हम साधारण टैब में जेनेरिक प्रिंटर ऑप्शन चुनते हैं
अल्ल पेजेस ऑप्शन डॉक्युमेंट के सभी पेजेस को प्रिंट करने के लिए है
यदि आप पेजेस को क्रम में प्रिंट करना चाहते हैं आप पेजेस ऑप्शन को चुन सकते हैं और फील्ड में क्रम एंटर करें
उदाहरणस्वरूप हम यहाँ 1 3 टाइप करेंगे
यह डॉक्युमेंट के पहले तीन पेजेस को प्रिंट करेगा
यदि आप डॉक्युमेंट की कई कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो नंबर ओएफ कॉपीज फील्ड में वेल्यू एंटर करें
चलिए फील्ड में 2 वेल्यू एंटर करते हैं
चलिए अब डायलॉग बॉक्स में आप्शंस टैब पर क्लिक करें
स्क्रीन पर ऑप्शन की सूची दिखाई देती है जहाँ से आप डॉक्युमेंट को चुन या प्रिंट कर सकते हैं
प्रिंट इन रिवर्स पेज आर्डर नामक एक चेक बॉक्स देखते हैं
यह ऑप्शन इसे अधिक आउटपुट एकत्र करने के लिए आसान बनाता है
अतः इसके विपरीत चेक बॉक्स पर क्लिक करें
आप अपने पीडीएफ डॉक्युमेंट का भी प्रिंट ले सकते हैं
हम पहले ही देख चुके हैं कि डॉट ओडीटी डॉक्युमेंट को डॉट पीडीएफ फाइल में कैसे बदलें
चूँकि हम डेस्कटॉप पर पीडीएफ फाइल पहले ही सेव कर चुके हैं हम पीडीएफ फाइल पर डबल क्लिक करेंगे
अब फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रिंट पर क्लिक करें
चलिए डिफॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करें और फिर प्रिंट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि फाइल का प्रिव्यू स्क्रीन पर है
अब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिव्यू पेज में प्रिंट थिस डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करें
अब हम लिबर ऑफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः डॉक्युमेंट्स देखना
डॉक्युमेंट प्रिंट करना
व्यापक नियत कार्य
राइटर में थिस इस लिब्रियोफिस राइटर टेक्स्ट लिखें
डॉक्युमेंट को पूर्ण स्क्रीन में देखने के लिए फुल स्क्रीन ऑप्शन का उपयोग करें
डॉक्युमेंट के ऑप्टिमल के साथ ही साथ वेरिएबल व्यू के लिए जूम ऑप्शन का उपयोग करें वेरिएबल वेल्यू 50 सेट करें और फिर डॉक्युमेंट देखें
डॉक्युमेंट के पेज प्रीव्यू पर जाएँ और पेज पर बार्डर के साथ डॉक्युमेंट की दो कॉपी प्रिंट करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो को देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
यदि आपके पास अच्छा बैन्डविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें हम सर्टिफिकेट भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contactspoken tutorialorg पर संपर्क करें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद